इंट्रोडक्शन टो पन कार्ड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे पन कार्ड के बारे में PAN कार्ड का स्ट्रक्चर और प्रमाणिकता पन कार्ड की जरूरत और अपने पन कार्ड के बारे में जानना पन का मतलब परमेनेंट अकाउंट नंबर होता है
पन कार्ड ऐसा दिखता है
यह 10 डिजिट का एल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है जो क़ानूनी संस्था द्वारा इशू किया जाता है
यह भारत के आयकर विभाग द्वारा इशू किया जाता है
पन कार्ड आवंटित करने के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पहचान करना और उस संस्था के आर्थिक लेन देन की जानकारी रखना है
पैन कार्ड के तथ्य पन विशिष्ट राष्ट्रीय और स्थाई होता है
यह पते में बदलाव से अप्रभावित रहता है
एक से अधिक पन कार्ड रखना गैर क़ानूनी है
कौन कौन पन कार्ड प्राप्त कर सकता है160
व्यक्ति कम्पनी हुफ यानि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली
ट्रस्ट और अन्य कई निकाय हमें पन कार्ड की आवश्यकता क्यों होती है160
पन कार्ड महत्वपूर्ण फोटो आईडी प्रूफ की तरह कार्य करता है
पन कार्ड बैंक का अकाउंट खोलने में मदद करता है माल के खरीदने और बेचने में मदद करता है आदि
पन कार्ड प्राप्य कर देने योग्य वेतन पे एकाउंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग होता है
आयकर रिटर्न भरने में सहायक होता है
शेयर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक डॉक्युमेंट्री प्रूफ के रूप में उपयोग होता है
बैंक से 50 000 से अधिक रुपये निकालने के लिए डॉक्युमेंट्री प्रूफ के रूप में उपयोग होता है
यह एक टूल है जो कर बक़ायदार पर नियंत्रण रखने में इत डेप्ट की मदद करता है
यह अपरोक्ष रूप से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगाकर किया जाता है
यह टीडीएस यानि प्राप्त करने के लिए डॉक्युमेंट्री प्रूफ के रूप में उपयोग होता है
पासपोर्ट के लिए उपयोगी डॉक्युमेंट्री प्रूफ है
एड्रेस बदलने के लिए और कुछ अन्य सम्बंधित डॉक्युमेंट्स प्राप्त करने के लिए 50000 से अधिक रूपए के फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए 25000 से अधिक रूपए के होटल बिल और यात्रा के खर्चे को चुकाने में क्रेडिट कार्ड इशू करने की एप्लीकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शन की एप्लीकेशन के लिए पन स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है
पहले पांच कैरेक्टर्स अक्षर अगले चार नंबर्स आखिरी कैरेक्टर अक्षर
पहले तीन अक्षर एए से ज़ज़ तक के अक्षरों का अनुक्रम होते हैं
चौथा कैरेक्टर कार्ड रखने वाले के टाइप को बताता है
प्रत्येक मूल्यांकन विशिष्ट होता है
पर्सन के लिए प कंपनी के लिए सी हुफ यानि हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली के लिए ह फर्म के लिए फ़ एओपी यानि एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स के लिए आ ट्रस्ट के लिए ट बोई यानि बॉडी ऑफ़ इन्डविजूअल्स के लिए ब लोकल अथॉरिटी के लिये ल आर्टिफिशल जुरिडिकल पर्सन के लिए ज और गवर्नमेंट के लिए जी पन का पाँचवाँ कैरेक्टर है व्यक्तिगत पन कार्ड की स्थिती में व्यक्ति के सरनेम या लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर प्रदर्शित इमेज में सरनेम यादव है
इसलिए पाँचवाँ कैरेक्टर य है
या कंपनी हुफ Firmया अन्य प्रकार के पन कार्ड की स्थिति में एंटिटी ट्रस्ट सोसाइटी आर्गेनाइजेशन का नाम प्रदर्शित इमेज में ट्रस्ट का नाम शैनोज़ है इसलिए पाँचवाँ कैरेक्टर एस है
आखिरी कैरेक्टर ऐल्फबेटिक चेक डिजिट है
पन कार्ड इशू होने वाली तारीख़ पन कार्ड पर दायीं तरफ दी जाती है
निम्न लिंक पर जाकर आप पन नंबर्स का सत्यापन या प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं
अब सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा PAN कार्ड के बारे में PAN कार्ड का स्ट्रक्चर और प्रमाणिकता PAN कार्ड की ज़रूरत और अपने पन कार्ड के बारे में जानना
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद